यहाँ पे चुक-भुकियाँ है यहाँ पे लड़ी है वहाँ पे देखिए एक गाड़ी है वहाँ पे देखिए कपड़ा है वहाँ पे पेट्रोल पंप है।

वहां पे देखिए गाड़ी है वहां पर छत पीटा हुआ है वहां पे बोर्ड है।

वहाँ पे गुड़िया है वहाँ पे दूसरी रंग की गुड़िया है।

यह मकान है यहाँ पे गाछ-वृक्ष है यहाँ पे गाड़ी है यहाँ पे भेन है वहाँ पे बोर्ड है।

वहाँ पे एक लोहा है वहाँ पे भी एक लोहा है वहाँ पे एक तकीया है वहाँ पे एक लोहा है ।

वहाँ पे एक ट्रक है वहाँ पर लोग हैं | यहाँ पे भी एक लोग हैं यहाँ पे भी एक लोग है ।

फल्ली बिछा हुआ है वहाँ पे लोग हैं वहाँ पे कुर्सी है वहाँ पर कुर्सी हैवहाँ पे लोग है वहाँ पे कुर्ता पेहना हुआ है वहाँ पे देखिए फराक साड़ी --

देखिये ये वे लोहा का पिलर ठोका हुआ है वहाँ पे देखिए एक मन्दिर जैसे लग रहा है कोसो कोनो ऑफिस है यहाँ पे देखिये --

यहाँ पर घड़ी पिन्हा हुआ है देखिए --

मै तो हूं वहाँ पे देखिए --

बहुत औ अथी ऑफर में है वहाँ पे देखिये सिलाई म --

लग रहा है ये मकान लग रहा है दे दिया है वहाँ पर देखिए बॉल जा रहा है वहाँ पे एक मकान वो लग रहा है पिलर है उसके साइड मे --

देखिए घर बन रहा है देखला छत --

लोग है ढ़ेरी का लोग है वहाँ पे रस्सा हैं।

वही खाती है पानी गिरा पत्थल पे से पानी गिर रहा है।

डब्बा लग रहा है चू रहा है वहां पे देखिए नीचे में जनरेटर है।